ये एक बिल्डिंग का वर्क चल रहा है जहां इसके आसपास बैम्बू लगाए गए है।

इसके ऊपर बल्ब लगा हुआ है जो की ओके साइड में बहुत सारे अग्निशामक यंत्र रखे है।